तीन-चार आदमी जा रहे है दो आदमी स्कूटी पे जा रहे है और दो लोग पैदल जा रहे है और यहाँ पे पेड़ भी लगा हुआ है।

और यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं और यहाँ पे बैल बनी हुए है जिस पे सफ़ेद-सफ़ेद फूल है अंदर तक तख़्त है तो तख़्त के ऊपर औरत बैठी हुई है यहाँ पे पीले कलर का छप्पर है।